एक बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यह एक ट्रक है व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का ट्रक है ये यहां पे और बहुत सारे ट्रक खड़े हुए है लाल कलर के नीले कलर के सफेद कलर के वहां पे गोडाउन बना हुआ है लोहे का उसपे शेड डला हुआ है।

ब्लैक पिलर लगे हुए है लोहे की रॉड डली हुई है यहां पे खंबे लगे हुए है बीजली के।

यहां पर एक जीन चढ़ने ऊपर चढ़ने के लिए एक नीला टाइप का और बिल्डिंग टाइप का बना है उस पर चढ़कर देख सकते हैं बहुत सारे लड़के लोग यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यहाँ पे नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है जिसपे शटर डाला हुआ है बाहर एक बाइक खड़ी हुई है ब्लैक कलर की बाइक खड़ी हुई है।

दो तीन गाड़ियां खड़ी है स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ी है एक बहोत बड़ा सा घर टाइप का उसके अंदर एक अंकल जा रहे है।

एक लड़का है वो झाड़ू लगा रहा है लड़के ने हाफ टी-शर्ट पहनी हुई है ब्लैक कलर की जीन्स पेहनी हुई है ब्लैक कलर की शूज पहने हुए है ब्लू कलर के --